यह एक नाई का दुकान है इस दुकान मे एक आदमी एक बच्चे का बाल काट रहा है एक टीवी है दो तीन सीसे लगे हुए है इस घर मे--